इधर स्विमिंग पूल बहुत बड़ी दिख रही है कुछ लोग इधर खड़े हुए है और डुबकियां मार रहे है पीछे झाड़ दिख रहे है झूले भी बने हुए है इधर।

इधर प्लेट मैं खाना दिखाई दे रहा है | बिरयानी खा कर इधर रखे हुए हे एक पानी की बॉटल दिक् रही हे एक कप दिखाई दे रही हे स्पूंस दिखाई दे रहा है |